ऊपर मे लाइट दिखाई दे रहा है और बगल मे खिड़की भी है।

हा एहा तो बुद्ध वाला समाज कस लगत हे गा जेमन गेरुआ रंग के कपड़ा ला पहिन के बेग-वेग पकड़ के बइठे हावय मस्त अइसे कोंघड़के अउ का का करत हे भई ए मन।